इस फोटो में हमें एक मकान दिखाई दे रहा है जो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है।

अभी तक इसकी सिल सिल सिलसिले पूरी हुई हैं दो अ दो मजदूर लकड़ी पे चढ़े हुए हैं।

ये एक तीन मंजिल की बिल्डिंग है जिस पे ओ दिन द अटाटा स्काई--

और ई_ ई_ ई_ एम_ आई_ और संगीत इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है इसमें एयरटेल बजाज--

और सैमसंग की चीजें मिलती हैं और यहां पर बाहर एक स्कूटी दो बाइकें हैं।

ब-ब पीछे एक गेट है जिसका रंग काला है।

बहुत सारे लोग जिम करने के लिए आते हैं इस जिम का रंग सफेद है और इसे गुलाबी रंग के पर्दे--

ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहा पर बहुत सारे मजदूर एक पोल बना--

बहुत सारे पोल्स बना रहे हैं यहां पर इनका गाइडर भी इधर ही है जो इनको गाइड कर रहा है और उसके गले में लाल कलर ब्लू कलर का पट्टा--

ये एक हट है जिसमें बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं और यहां पर साथ-साथ इसके--

ये फूल डाली भी मिलते हैं इन फुल डालियों के रंग अलग-अलग है ज्यादातर फूल डालियों के--

यह एक होटल है जहां पर सफेद और नीले रंग की कुर्सी है और इसके टेबल का रंग ब्राउन है यहां पर टेबल पर--

बेस गाय और भी बहुत सारी पुतले बनाए हुए यहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है और ये--

एक लाल रंग की गाड़ी आ रही है यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो सफेद रंग की हैं।

यह एक ट्यूशन क्लासेस है यहां पर एक यहां पर आगे तीन लड़कियां और बाकी सारे लड़के बैठे--

यहां पर बड़े-बड़े पेड़ है यहां पर एक पेड़ तारे का भी है ये इसके साइड पे एक पाथ हैं जिसका रंग गुलाबी है और यहां पर छोटे-छोटे फूल भी लगे हुए--

जूस आइसक्रीम का फ्रीजर भी है और यहां पर जिलेट गार्ड के ब्लेड्स भी मिलते हैं यहां पर टैंक्स और भी बहुत सारी चीजें मिलती --

यह ब्लू एयरपोर्ट है और यहां पर साइड में दो बाइकें हैं औ--

मशीनों को तेल मशीनों के मोटर में डालने वाली ऑयल और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहां पर साइड में चार गॉगल वाला--

जिसका इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक --

यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं यहां पर छोटे छोटे पेड़ भी लगाए --

यहां पर देवी देवताओं के अ मूर्ति बने हुए यहां पर बहुत लोग--

देवी देवताओं के मूर्ति देखने आ रहे हैं यहां पर सभी ने सिंदूर लगाकर का सिंदूर पहना हुआ और एक छोटी बच्ची है जो खेल रहे हैं।

यह एक ऑफिस है और यहां पर अलग-अलग कैबिन बने हुए हैं यहां पर अलग-अलग लोग बैठते हैं यहां पर ऊपर एक पानी की बोतल भी है और यहां पर एक घड़ी भी--